एक मछली मार्केट है यहां पर मछली बहुत लोग खरीदने आया है बहुत लोग मछली काट रहा है इसमें व्हाइट थर्मोकोल है ।

कुछ घर ब्राउन कलर से कुछ घर स्किन कलर से कलर किया गया है।

नहीं मुझे लग रहा है किसी चीज का मेला लगा हुआ है इसलिए बहुत सारा वीड है।